इस इमेज में मुझे कार्टून्स दिख रहे हैं।

इमेज में मुझे फुल दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे स्लोप दिख रहा है।

इस इमेज में जो स्लाइड है उसका कलर यल्लो है।

इस फोटो में मुझे एक लकड़ी का चम्मच दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे एक फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है।

इस फोटो में एक कपड़ा दिख रहा है।

इस फोटो में एक ब्लू कलर की टेबल दिख रही है।

इस फोटो में बहोत सारे तार दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे बहुत सारे बीटल नट्स के पेड़ दिख रहे हैं।

ये मुझे इस इमेज़ में मुझे एक मॉल दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे खुला आसमान दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक सफेद कलर का फूल दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा कार्टून दिख रहा है।

इस इमेज मुझे लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे शर्ट्स दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे दुकान दिख रहा है।

इस इमेज में वो आदमी फोन पकड़ा हुआ है इस इमेज में मुझे गुफा दिख रही है।

इस इमेज में मुझे बहुत सारे चिप्स दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे ब्रीड्स दिख रहे हैं।

इस इमेज़ में मुझे दो बाइक और दो स्कूटी दिख रही है।

इस इमेज में मुझे करकट दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे डाइनिंग टेबल दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे पंखे दिख रहे हैं।

इस इमेज मे मुझे लाइट्स दिख रही हैं।

इस इमेज में मुझे दो लोग खड़े दिख रहे है।

इस इमेज मे मुझे स सफेद कलर की एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस इमेज मे मुझे एक खुला मैदान दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे रोड दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिख रहा है इस फोटो में मुझे खुला आसमान दिख रहा --

इस इमेज़ में मुझे प्लेग्राउंड दिख रहा है।

इस इमेज मे मुझे मैट दिख रहा है।

इस ईमेज में मुझे एक औरत दिख रही है।

इस इमेज में जो घड़ी है उसमें छह बज के सात मिनट हो रहा है इस रेलवे स्टेशन का नाम गुमतो है।

इस इमेज में मुझे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे वजन नापने वाली एक मशीन दिख रही है इस इमेज में मुझे एक बोरा दिख रहा है।

इस इमेज मे मुझे खेत दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे बंबू के बेढे दिख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे टीनों से बना हुआ बिल्डिंग दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे ठेले के पहिए दिख रहे हैं जो साइकिल के हैं।